इस फोटो में मुझे एक गुरुद्वार बना हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी सीढ़ियां दिखाई दे रही और एक सामने एक पेड़ लगा हुआ है।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

एक सफेद कलर की शर्ट पहने लड़का आगे बैठा हुआ है उसके सामने एक बड़ा- सा पेपर रखा हुआ हैं।

इस फोटो में मुझे एक टूटी हुई कार दिखाई दे रही है जिस को दो लड़के सुधार रहे है।